यहां एक लाइन से कंप्यूटर डेस्क लगाए गए हैं।

सामने दो व्हाइट कलर की चेयर और एक टेबल रखी हुई है।

इस मस्जिद के आस पास बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

स्टेज के ऊपर एक लंबे डेस्क दिख रही है।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट के अंदर की है।

यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की चेयर्स एवं टेबल लगे हुए हैं।

यहाँ आस पास पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यहां सामने लकड़ी के चेयर्स एवं टेबल रखे गए हैं जिनपे कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

पंप के पीछे एक बिल्डिंग है जो कि व्हाइट एंड ग्रीन कलर की है।

साथ ही छोटे छोटे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह पिक्चर किसी रेस्टोरेंट की लग रही है।

पेट्रोल पंप के ऊपर लाइटे लगी हुई है।